यहाँ पर एक फर्श दिखाई दे रहा है जहाँ हरी-हरी घास फैली हुई है। यहाँ पर कई सारी महिलाऐं बैठी हैं। पूजा स्थल का दृश्य है जिसमें छोटी-छोटी ईटों की --

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें कई सारे फ़्लोर्स दिखाई दे रहे हैं। फ़्लोर्स पर लगी हुई है। दीवार दिखाई दे रही हैं जहाँ खिड़की लगी हुई हैं। आस-पास कई सारे लोग खड़े हैं। नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक कुर्सी --

दीवार दिखाई दे दीवार के आसपास लाइटें लगी हैं। लाइटें जल रही हैं। दीवार दिखाई दे रहा है जहाँ पर रंग बिरंगे गुब्बारें लगे हुए हैं। नीच का फर्श द --

सड़क पर एक और ऑटो जाता दिखाई दे रहा है। एक आदमी जिसने चेक की शर्ट पहन रखी है उसके हाथ में चालान लगा हुआ है बराबर में एक और आदमी खड़ा है जिस के गले में सफेद रंग का कपड़ा पड़ा हुआ है नीचे की छाया भी जमीन पर पड़ --

काले रंग की है पीछे टी सेट दिखाई दे रहा है लाइटें जल रही हैं। बोहोत सारा समान जोकि फर्श पर रखा हुआ है। चारों तरफ लाइटें जलती हुई नजर आ रही हैं। पीछे की दीवार दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही है। टेबल सफेद रंग की है। कुर्सी पड़ी है। कुर्सी पर एक आदमी बैठा है जिसके ह गले मे स्टैथौस्कोप है उसने चेक का कोट पहन रखा है अंदर स्वेटर पहन रखा है जोकि काले रंग का है।

यहाँ पर सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर एक ऑटो दिखाई दे रहा है जो कि हरे और पीले रंग का है। सड़क पर बेरीअर दिख रोड पर --